वहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है जो पूरी व्हाइट कलर की है ब्लैक कलर का गेट है।

है जहां एक मूर्ति बनी हुई है एक स्टेज बना हुआ है और स्टेज में बहुत सारे जालियां लगी हुई है और एक खम्भा लगा हुआ है जहां से बहुत सारे तार भी जॉइंट है एक बैनर लगा हुआ है एक --

अ बिल्डिंग के अंदर घर का कलर पूरा स्काई ब्लू कलर का है और आसमान जो है वो पूरा ब्लैक कलर का है।

यहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है जो की मुझे रेड और ब्लू कलर में दिख रही है और बिल्डिंग मे कुछ लिखा भी हुआ है नीचे गेट लगा हुआ है जो स्काइ ब्लू कलर का है और येल्लो कलर का पट्टा दिया हुआ है।

एक कार है और एक ऑटो खड़ा हुआ है जो की ब्लू कलर का है एक दुकान है जहाँ पे रेड कलर का टेबल रखा हुआ है एक लड़क एक लड़का दिख रहा है मुझे जो ये येलो कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पेहना हुआ है आजु-बाजू बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जिसमें बिजली कड़क रही है और बादल भी है जो पूरे ब्लैक कलर के दिख रहे है आजू बाजू बहुत सारे पेड़ हैं जो पूरे ग्रीन कलर दिख--

चप्पल पहना हुआ है नीचे बहुत सारी घांस लगी हुई है घांस के पास एक चिप्स का पैकेट भी पड़ा हुआ है और बिल्डिंग का कलर ब्लू एंड व्हाइट है।

बोहोत सारी बिल्डिंग बनी हुई हैं नीचे बोहोत सारी कार खड़ी हुई हैं एक गार्डन भी है जिसमें बोहोत सारी घांस लगी हुई हैं।

और बहुत सारे ट्री लगे हुए हैं जो कि ग्रीन कलर के दिख रहे है बिल्डिंग में कहीं-कहीं कपड़े भी डले हुए हैं और यहाँ स्काई ब्लू कलर और पर्पल एंड वाइट कलर का मुझे बादल भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे तार भी लगे हुए --